साइड दुकान है जिसका शटर बंद है जो ऑरेंज कलर का है। ऊपर लाइटें लगी हु --

काफी सारे पेड़ पौधे हैं यहां पर फूल भी है यहां पर एक गुलाब का फूल दिखाई दे रहा है जो की रे पिंक कलर का है।

बंद लाइटें लगी हुई हैं काफी सारी--

लाइटें लगी हुई हैं लैंप लगा हुआ है।

एक रोड साइड एरिया है यहां पर एक बड़ा सा पेड़ है एक दीवाल है जिसपे काफी सारा पेड़ ल लटके हुए हैं।

बड़ा सा पेड़ है जो खजू खजूर का है बिल्डिंग है उसपे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है एस सी एम और एक दीवाल है जिसपे कुछ लिखा हुआ है गोल्डन कलर से।

पीछे वाल पर्दा है नीचे स्टूल रखा है।

जो आदमी उसके हाथ में फोन है उसने जूते पहने ग्रे कलर की ब्लैक है।

ए रे मिट्टी मिट्टी है और एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ खजूर का दूसरी साइड एक पेड़ लगा हुआ जो दिखाई दे रहा है।

ये ए_टी_एम मशीन है यहां पर कुछ आदमी खड़े हुए हैं बाइक से कुछ जा रहे हैं सामने एक मशीन है।

दरवाजा है कांच का ऊपर लिखा है ए_टी_एम --

बना हुआ जो कि रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ दु साइड में भी एक रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

जिसकी दीवाल है वाइट कलर की। ऊपर एक पेड़ है उसके ऊपर एक घर है जिसकी खिड़की खुली हुई है।

यहां पर सोफे हैं यहां पर डी_जे ब की इमेज छपी हुई है एक पंखा है एक ए_सी है।

साइड में एक गिटार रखा हुआ है पास में एक आदमी खड़ा हो थोड़ी सी दूरी पे एक आदमी और है दीवार पे कुछ फोटोस लगी हुई हैं और--

यहां पर मेन्यू है टेबल है चेयर है सा--

कैफे है जिसका नाम है मरीन ड्राइव कैफे बोर्ड पे लिखा हुआ है यहां पर एक बड़ा सा मेनू है यहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं।

स्टेशन है यहां पर पटरियां दिखाई दे रही हैं यह एक रास्ता है दूसरी साइड जाने के लिए।

और थोड़ी सी दूर पे एक और वाइट कलर का छोटा सा खंभा लगा हुआ है काफी सारे वहां भीड़ इकट्ठा है।

थोड़ी सी दूर पे ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है।

इस पे लिखा हुआ है मोबियाई स्पीड बाइक प्वाइंट ।

यह एक नर्सरी है यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे हैं।

जो कि कुछ लंबी मछलियां है कुछ छोटी है कुछ रेड कलर में है कुछ ब्लैक कलर में कुछ सिल्वर कलर में है।

और यहां पर बेंचे हैं और रेलिंग बनी हुई है साइड में।